यह एक चर्च की तस्वीर है जहां पर काफी सारे लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए यहां पर खड़े हैं।

यहाँ पर एक महीला खड़ी है जो पौधो को पानी दे रही है उसने साड़ी पहनी हुई है और मास्क लगाई हुई है यहां पर--

यह एक लाइब्रेरी है जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद है लड़के एवं लड़कियाँ यहाँ पर काफी सारे किताब रखी है।

यह एक स्कूल की तस्वीर है जहाँ पर कॉम्पटीशन रखा गया है और काफी सारी लड़कियां यहाँ पर टेबल के ऊपर रखे हुए सामान से कुछ बना रही हैं।

यह एक वेदांत बुक्स वर्ल्ड है जहाँ पर काफी सारी किताबें किराना स्टोर है जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसकी शर्ट का कलर ब्लू हैं।

कि फ्रेम में लगी हुई है नीचे ये पत्थरों से बना हुआ डेकोरेट किया गया है यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है जिसपे घास उगी हुई है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।